इसके अंदर लेज के पैकेट रखे हुए है फॉर्चून ऑयल का पैकेट रखा हुआ है।

पीछे बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

एक एलिवेटर लगा हुआ है उसके बगल सीढ़ियां लगी हुई है।

यह एक नर्सरी का फोटो है।